हरा कलर का कार्पेट है एक कुर्सी रखी हुई है ऊपर शेड लगा हुआ है ताकि धुप ना आ सके एक चेयर पर आदमी बैठा है उसके पास में खाली चेयर है जो रेड कलर की है अंदर कांच का गेट बना हुआ साइड में सामान रखा हुआ है।

--जैसा की हम देख सकते है ये एक पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल पंप पर गाड़िया नहीं है पर पेट्रोल दिख रहा है और दो आदमी दिख रहे है जो नीले कलर की शर्ट में जो आपस में बात करते हुए दिख रहे है।

साइड में छोटा सा गार्डन है पीछे हरे - भरे पेड़ है साइड में पेट्रोल पंप की छोटी सी मल्टी टाइप बना हुआ है ऊपर चन्द्रमा नहीं सूरज दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है।

जो की बहुत पुराना सा घर जैसा भी लग रहा है और मंदिर भी लग रहा है साइड में पौधें हैं पीछे एडवेंचर पार्क जैसा भी बना हुआ है जो की बहुत सुंदर दिख रहा है ऊपर आसमान है खुला हुआ राइट साइड ट्रेडिंग लटकी हुई है लकड़ियों की ऊपर झोले जैसा दिख रहा है झंडा लगा हुआ है।